दे रहा है जिसकी पत्ती--

और एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है।

यहां पे कितनी सारी बेन्चे से रखी हुई है।

सामने कितनी सारी लोहे कि बनी एक मिक्सी सी दिखाई दे रही है जिसमें कितने पहीये लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कितनी सारी अलमारियां बनी हुई हैं जिसमें कितना सारा सामान रखा हुआ है।

और साइड में एक गमला भी रखा हुआ है।

बड़े बड़े अक्षरों में सर्विस लिखा हुआ है।

यहां पर मेज कुर्सी दिखाई दे रही है।

लेडिस के हाथ में एक बंदूक भी दिखाई दे रही है।

और जेंट्स के हाथ में भी बंदूकें दिखाई दे रही है।

इतने सारे फेसु फेस के प्रोडक्ट रखे हुए हैं।

यहां पर परफ्यूम भी रखे हुए हैं।

सामने कितना सारा क्रिकेट का सामान--

क्लर की गेंद भी रखी हुई है।

सामने एक मैरिज हॉल दिखाई दे रहा है।

यहां पर कितनी सारी लाइटें --

यहां पर कितनी सारी कुर्सी और मेज भी रखी हुई है।

और कुछ खड़े दिखाई दे रही है।

ये भी है साइड में गमले भी रखे हुए है।

सारी बच्चियों बैठी हुई है और यहां पर एक टीचर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।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

जो जंगले पर चढ़ रही है और यहां पर एक डंडी भी रखी हुई है और यहां पर एक तार भी खींचा हुआ है।

एक लड़की ने सिर पर एक रेड कलर की पट्टी पेहन रखी है।

दिखाई दे रही है और यहां पर--

जीरो जीरो वन एट लिखा हुआ है।

यहां पर एक ग्रीन कलर की टंकी भी रखी हुई है।

और टिशू पेपर रखा हुआ है।

और यहां पर व्हाइट रेड बैलून लगे हुए हैं।

और यहा पर इतने सारे पेड पौधे भी दिखाई दे रहे है।

सारे कागज से बने प्रोडक्ट रखी हुई है।

और यहां पर दीवार पर बहुत बड़ा शीशा भी लगा हुआ हैं।

पीछे मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

दिखाई दे रहा है और यहां पर बाइकें भी दिखाई--

रखी हुई है यहां पर जेंट्स भी--

जो डांस कर रही है।

पोस्टर भी लगी हुई हैं।

और सभी शटर का कलर अलग अलग दिखाई दे रहा है।